लाइन से मार्किंगस किया हुआ है दो लेन का और पीछे का पेड़ लोग जो थोड़ा सुखा हुआ है जिसमें पत्ता नई है अभी --

लड़की बच्चा लोग का ड्रेस भी देख सकता है।

और वो हम इसमें एक फेंस देख सकते हैं जिसका अंदर बहुत ज्यादा हिरण लोग को रखा हुआ है।

कोई जू जैसा लग रहा है या फिर प्रोटेक्टेड एरिया जैसा जो स्पेशली हिरन लोग के लिए बना हुआ है वाइल्डलाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए बना हुआ है।

और यह फोटो के साइट में हम लोग को एक स्टूडेंट भी दिखाई देता है जो की एक लड़की बच्चा है।

मैट रखा हुआ है ये आदमी लोग को बैठने के लिए ऊपर में।

राइट साइड में बैंबू का पेड़ है जो की सुंदर सा कलर करके और ऊपर में ऊपर में छत से कनेक्ट करके बहुत ज्यादा लाइट्स को लटका के रखा हुआ है।

ये फोटो देखने से लग रहा है जैसे कि आदमी लोग एग्जिबिशन में स्टॉल लगाए हुआ है बहुत ज्यादा आदमी अलग अलग स्टॉल में जा के--

बच्चा जो ब्लू कलर का ड्रेस पहना हुआ है और ले रेड कलर का लॉन्ग पैंट पहना --

पीछे में आदमी लोग भी बहुत ज्यादा बैठा हुआ है और ग्रासेस भी छोटा है ग्रीन कलर का।

यह फोटो एक कंप्यूटर या मोबाइल दुकान का जैसा है जिसका ओप्पो भी लिखा हुआ है।

पीछे में स्कूल का बिल्डिंग्स भी दिखाई दे रहा है।

और ये सब ब्लू स्काइज भी दिखाई दे रहा है।

होटल पाएंग रीजेंसी बोल के जो कि श्री अलोलीबान से जो इनोग्रेट किया था उनके एक बोर्ड जैसा लिखा हुआ है।